और सामने मिट्टी रखी दिखाई दे रही है।

घर में कांच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और आसपास सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

खिड़की दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें सामने एक रेल की --

पटरी दिखाई दे रही है।

लगी हुई दिखाई दे रही है।

पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पर्दे खिड़की पर लगे हुए --

दरवाजा दिखाई दे रहा है।

ट्रैक्टर और ट्राली दिखाई दे रही है।

मैदान में अलग-अलग रंग के झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पानी का तालाब बना हुआ --